यह एक जिम क्लब है। यहाँ पे जिम --

जिम बहोत ही अच्छा है बहोत सारे लड़के जिम कर रहे हैं देखने में बहोत अच्छा सुन्दर लग रहा है डिजाइनिंग बहोत अच्छा किया गया है।

यह एक फील्ड है। फील्ड के ऊ --

बीज बो के तब फसल उगाते हैं।

यह एक एक्सिस बैंक का ए.टी.एम. है | सामने बैंक ऑफ़ बरोदा का ए.टी.एम. लग रहा है | देखने मे बहुत ही सुंदर लग रहा है |

यह एक गौतम बुद्ध का फोटो है देखने मे तो बहोत सुंदर लग रहा है बहोत सारे लोग यहाँ पे शायद घूमने के लिए आते हैं। गौतम बुद्ध का फोटो बहोत सुंदर लग रहा है देखने में।